आठ दस पक्षियां दिखाय दे रहे हैं जो पक्षी वाईट कलर के हैं।

लड्डू दिखाई दे रहें हैं और चने भुजेवाले भी दिखाई दे रहे हैं। तीन काउंटर में तीन लाइनों में रखे हुए हैं।